तीन बच्चे सामने में ही दौड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ घास का मात्रा बहुत ही ज्यादा हरा भरा--

तस्वीर मे आप एक युवक को देख सकते हैं जो की प्लास्टिक की पन्नी पेहेन के खड़ा है।